भाई साहब आप बाल देख रहे है कितना अच्छा कटा है लगता है यार लगता है किसी को बहोत ज्यादा काट दिया है भाई साहब बहोत अच्छा से बाल कटा है बहोत अच्छा लग रहा है।

भाई ये लेडीज पूजा कर रहे है किस चीज का पूजा कर रहे है मुझे नहीं है पता फिर भी मै इतना बता सकता हूँ पूजा कर रहे है।

और ये लेडिस भी ले रही है यार देखो बात है जो ठीक ही है मैं भी लूंगा ऐसा बात नहीं आ रहा हूँ।